हम यह भी देख सकते हैं कि लड़का लड़की कितने खुश भी मौजूद है।

इस दृश्य में हमें बहुत सुंदर सा सीन दिखाई देता है जंहा पर पैदल चलते हुए हम जब सीढ़ीओ से जाते हैं तो हमें एक बड़ा सा गोल खूबसूरत सा पार्क दिखाई देता है।

और बाकी सारे लोग रंग में खेल रहे हैं और यह स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है।

सारे सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं ताकि उन्हें अपने एग्जाम के लिए इम्तिहान के लिए मदद हो |

इस द्रश्य में जे.पी.डी . ग्रॉउंड को दिखाया गया है जहाँ पर ये पेलेस है शादी करवाने के लिए और यहाँ पर बहुत ही सुन्दरता से दुल्हा दुल्हन के वेलकम के लिए सजाया गया है।